बहोत सारे ठेकेदार हैं एक यहाँ पर और है उसके पास बहोत सारे लड़के काम कर रहे हैं आस-पास में बहोत सारे पेड़ पौधे हैं लाइट के तार हैं ।

एक हॉल में यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है स्टेज के बाहर एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है एक पोस्टर पोस्टर के ऊपर एक येलो कलर की लाइटे लगी हुई --

और लोहे के ऑरेंज कलर के एंड यहाँ पर ये शैडो दिख रही है पहाड़ बने हुए है।